मुझे इस चित्र में दिख रहा है।

जिसपे लिखा है फूडी टू चेन्नई एक्सप्रेस और जरनल --

यहां पे अलग-अलग तरीके के स्पीकर हेडफोन बैटरीज़ --

इनॉग्रेशन के लिए ब्लू और व्हाइट बैलून से ये शोरूम सजाया गया है।

कलरफुल रंग बिरंगी बत्तियों से सजाया गया है।

यहां पे एक आदमी टोकरी में कुछ सामान और पत्तियां घास की लिए हुए खड़ा है।

जहां पे एक गोल बड़ी मशीनरी पड़ी है।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

ये एक न्यूली इनॉग्रेटेड मेडिकल है जिसका नाम--

शिवा की मेडिकोज दवाइयाँ हैं यह पर्पल और ग्रीन कलर से डेकोरेट की गई है।

मुझे इस चित्र में दिखाई दे रहा हैं कि ये एक--

कलर फूल लाइटिंग की गई है मन्दिर के यहां पेड़ है।

कलर फुल ड्राइंग की हुई हैं और एक लंबा सा सोफा रखा हुआ है।

कॉर्नर पे एक टेबल और एक ब्लैक कलर की चेयर है ऊपर लाइट लगी हुई है।